जहां पर कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं।

छोटा सा होटल दिखाई दे रहा है। जहां आगे की तरफ एक--

और एक शीशे का स्लाइडर भी दिखाई दे रहा--

यहां पर बहोत सारी बस खड़ी हैं।

जहां लाइट भी जल रहा है।

जहां बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।